यहां पर एक मॉल दिखाई दे रहा है और कुछ लाइट्स भी दिखाई दे रही है।

और कुछ लाइट्स भी दिखाई दे रही है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है और एक स्टूल भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ चेयर और कुर्सी दिखाई दे रही है एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।